कुर्सी राखी गई हे काले रंग की और सफेद रंग की अगल बगल कुछ लोग बैठे है जो सफेद रंग के कपड़े पहने है और सफेद नीला रंग के दीवाल है।

और पंखे चल रहे है जो काले रंग के पंखे है कांच लगी हुई है पाउडरस रखे गए हे क्रीम रखे गए हे शेविंग क्रीम है और कुर्सी को उपर एक टेबल रखा हुआ है।

और नीचे साइड पर टुकड़े हुए बाल पड़े सामने आईना लगा हुआ जो काफी बड़ा है दो आईने है और पानी का स्प्रे रखा हुआ है जो मैंगो का स्प्रे

जो लाल रंग के और पिले कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ। जो पिंक कलर का कपड़ा पहना हुआ है। दीवाल सफ़ेद रंग की है। प्लस का चिह्न बना हुआ है। पंखे चल रहे हैं लाइटे लगी हुई हैं जो सफ़ेद रंग की लाइट है। और एक बड़ा सा मुकुट बना हुआ है।